यहां पर इस चित्र में एक बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही हैं और यहां पर दो तीन कार नीचे खड़ी नजर आ रही हैं।

यहाँ पर इस इमेज में एक कमरा दिखाई दे रहा है जहाँ पे दीवाल पर कुछ सर्टिफिकेट्स टांगे हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पर इस इमेज में एक स्टेशनरी दिखाई दे रही है जहां पर दो लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पर इस इमेज में एक धर्मशाला दिखाई दे रही है जहां पर गेट और सीढ़ी नजर आ रही है।

यहां पर इस इमेज में एक झरना बहता दिखाई दे रहा हैं जिसमें दो आदमी नहाते हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पर इस इमेज में एक मैदान दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पर इस इमेज में एक स्कूल दिखाई दे रही है और बाहर एक कार खड़ी हुई नजर आ रही है।

यहां पर इस चित्र में बोरे में देखिएगा सबसे भरे नजर आ रही हैं और कुछ लोग यहां पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।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

यहां पर इस चित्र में देखिएगा एक दुकान दिखाई दे रही है और सामने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल रखी नजर आ रही है।

इस चित्र में देखियेगा यहां पर एक जिम दिखाई दे रही है जहां पर बैलून का डेकोरेशन नजर आ रहा है।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

यहां पर देखिएगा इस चित्र में यहां पर कुछ बिल्डिंगे दिखाई दे रही है और सड़क पर कार और टेंपु नजर आ रही है।

यहां पर देखिएगा इस चित्र में एक फाउंटेन दिखाई दे रहा है और आसपास कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

यहां पर देखियेगा इस इमेज मे जे_सी_बी मशीन दिखाई दे रही है और कुछ लोग यहां पर काम करते नज़र आ रहे है।

यहां पर देखिएगा इस चित्र में कपड़ों की दुकान दिखाई दे रही है जहां पर पैकेट में कपड़े रखे नजर आ रहे हैं।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

यहां पर देखिएगा इस चित्र में एक बुक स्टॉल दिखाई दे रही है जहां पर ढेर सारी किताबें रखी नजर आ रही है।